और जमीन पर एक ग्रीन मैट नजर आ रहा--

मुझे पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ गाड़ियां पेट्रोल भर्ती हुई नजर आ रही है।

चारो तरफ मुझे बड़े बड़े पेड़ पौधे और झाड़ियां भी दिखाई दे रही है और कुछ लोग भी मुझे यहा पे नजर आ रहे--

और कुछ बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे और पोल भी नज़र आ रहे हैं यह पे मुझे कुछ स्कूटी और गाड़िया पार्क की हुई दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक मस्जिद नजर आ रही है।

मुझे यहां पे छोटे-छोटे पेड़ और हरी भरी घास भी नज़र आ रही है मुझे छोटा सा तालाब भी यहां पे दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

आस पास मुझे बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे--

यहां पे मुझे एक एयरपोर्ट भी दिखाई दे रहा है।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

मुझे यहां लोहे की पोल दिख रहे हैं जिसमें बहोत सारी लाइट्स है।

हनुमान जी की मुझे बहोत बड़ी मूर्ति नजर आ रही है।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

और कुछ जेंस और बच्चे भी नजर आ रहे हैं।